बैठे हुए हैं। बड़ी सा दरवजा आएगा।

यहाँ पर क्लास रूम मे खिड़कियाँ हैं बोहोत बड़ी-बड़ी।

यहाँ पर मार्किट हेगा। बोहोत सारी बड़ी-बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है। कुछ दुकान है।